जो लेडीज है येलो कलर की साड़ी पेहनी हुई है।

एक लड़के ने ब्लैक शर्ट और पेंट पहना हुआ है उसके पीछे एक हाउस जो अभी बन रहा है एक--

इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कोई माता रानी का मंदिल है।

और एक पेड़ भी है जिनकी नीचे सब खड़े हैं।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

इनमें में बहुत सारे ब्लैक पहने हुए हैं एक ने व्हाइट पहना हुआ है।

इस इमजे मे हम देख पा रहे है की एक हाउस है जो येलो कलर का है उसके ऊपर एक --

टीने का कुछ रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है।

इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि एक हॉल है जिसमें बहोत सारी ब्लैक कुर्सी राखी हुई है।

फुटबॉल का ग्राउंड है यहां पे बहोत लोग मौजूद है और बीच में एक खंभा गड़ा हुआ है जिसके ऊपर--

इस इमेज मे देख पा रहे है कि स्कूल है जो--

इन्होंने रेड ग्रीन ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है।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

गनेश भगवान का मूर्ति है उसके ऊपर एक--

वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो व्हाइट शर्ट --

और ये गणेश भगवान की मूर्ति है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रही हूं कि कोई कंपनी जिसमें बहोत सारे गुब्बारें व्हाइट येल्लो --